यो एक फ़ोटोज से इसमें थम देख सको हो यो एक पार्क का फोटू है।

तो इस फोटो में दिख्खे है कि आपको तेजस्वी योग के नाम पे कोई दुकान है।

शायद प्रकृति चिकित्साव हैं पंचकर्म संस्थान हैं यहाँ पे और--

तो इस फोटो में साफ सुथरा दिखाई दे रहा है कि ये खेत है और--

पौधे सूख से रहे है साइड में गोभी के पेड़ से।

और ऊपर एक बोर्ड है जिसमें बड़ा और दो लेडीज छप रही इसमें कॉस्मेटिक का सामान धरा है एक बोर्ड और है मोटापा घटाएं वजन घटाएं।

टी_वी से हर एक स्टैंड के ऊपर टी_वी धार्या से एक खिड़की से वह मामूलिक रक्षा का दरवाजा के ऊपर एक बल्ब से--